ये कोंडागांव के कोपा बेडा का हो सकता है आज तक तो मै वहाँ पर गई नहीं हूं पर मैंने सुना है वहाँ के बारे में बहुत ही सुंदर है।

इ रिक्शा कहाँ का है ये तो नहीं पता --

किसी को तो गिटार बजाना बहुत पसंद होगा अपने घर में रखे होंगे नहीं ये तो टैग लगा होगा बेचने के लिए ही है।

अगर रियल का हाथी होता तो सूंड से उठा के फेक देता--

और पूरी विथ फॅमिली है।